मोटर में से पानी निकल रहा है चारों तरफ टीन हैं।

ए_सी लगे हुए हैं यहां बहोत अच्छी फैसिलिटी है यह बहोत बड़ा और अच्छा है।

यह देखने में बहुत बड़ा और मॉल जैसा लग रहा है।

जो बहुत ही सुंदर और बड़ी है।

टी_वी प्रेस बहोत सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं जो बहोत ही अच्छा और साफ है।

यहां नई चेयर रखी हुई है ब्लैक कलर की।

यह किसी का रूम लग रहा है।

चार्ट लगे हुए हैं कुछ थम्ब भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहोत सारा समान रखा गया है शैम्पू के पाउच और भी बहोत सारी चीजें--

यहां बहोत साफ सफाई लग रही है यह प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है।

पीछे एक बाइक भी खड़ी है।

जहां पर बहुत सारे कमरे हैं सामने बड़ा सा पार्क है।

बहोत अच्छा शोरूम जैसा लग रहा है बहोत ही अच्छी डेकोरेशन यहां पर की गई है यह बहोत ही सुंदर--